हैं और एक तरफ एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने काली पैंट और व्हाइट शर्ट पहना हुआ --

और ऊपर की तरफ बहुत सारे गमले लटके हुए और बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

जिसमे की सामने की तरफ काउंटर के उस तरफ एक कुर्सी दिखाई दे रही है।

और उन पे पेड़ो में लाल फूल निकले हुए हैं।

और कुछ खंभे जैसी इमारतें भी बनी दिखाई दे रही हैं।

यह छवि किसी लाइब्रेरी की हैं जिसमे की सामने की तरफ से एक ए_सी दिखाई दे --

उसके चारों तरफ पेड़ पौधे और कुछ झाड़ियां दिखाई दे रही--

गेट के ऊपर लिखा हुआ है शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद ।

यह छवि किसी हॉल के अंदर की है जिसमें की एक पुलिस वाले को एक व्यक्ति द्वारा सम्मानित किया गुलदस्ता देके सम्मानित किया जा रहा--

किसी नदी की किसी ब्रिज के नीचे की है जिसमें की कोई एक तीर्थ स्थल है जहां पर बहोत सारे व्यक्ति हाथों में कुछ छोटे छोटे बर्तन लेके उसमें जल भर रहे हैं।

काउंटर की उस तरफ एक व्यक्ति और सबके काउंटर के इस तरफ--

यह छवि भी किसी जंगल की है जिसमें की इक दो झीलें दिखाई दे रही हैं।

दूसरी तरफ कुछ झाड़ियों जैसे पेड़ लगी हुई जिनको काट कर एक आकृति दी गई है।

वहीं पर बांट रखे हुए हैं और उसके साइड में एक तरजुआ रखा हुआ है उस तरफ उसके एक महिला भी बेच रही है और कुछ ग्राहक भी खड़े--

घर के की हैं जिसमें कि छे गाए दिखाई दे रही है।

यह छत किसी बैकरी की है जिसमें की ऊपर की तरफ सजावट करने के लिए हार्ट वाले गुब्बारों का प्रयोग किया गया--

छठ पूजा की लग रही है जिसमें की बहुत सारी स्त्रियां एक स्थान पर फल चढ़ा रही हैं।

यहाँ और दो स्त्रियां उनके पैर छू रही हैं और--

इस छवि में एक पूजा करने वाला कोई स्थान दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में एक गार्डन जैसा दिखाई दे रहा है जिसके बीचों बीच एक मंदिर जैसा कुछ बना हुआ है।

यह छवि किसी अस्पताल या किसी होटल के रिसेप्शन की है जिसमें की सामने की तरफ एक रिसेप्शन दिखाई दे रहा --

यह छवि किसी भाषण देती हुई महिला की--

इन आठ खंभों के बीच में उ ऊपर की तरफ एक झूमर लटका हुआ--

इसके चारों तरफ गोल गोल कुर्सियां लगी हुई हैं जिसमें एक वेटर --

जिस में की चार लेग पीस रखे हुए हैं।

पीछे वाले हिस्सों में सिल्वर फाइल लगी हुई है और ये एक प्लेट में रखे हुए--

नीचे की तरफ टाइल लगी हुई है जो की वाइट कलर की है।

फव्वारे से पानी निकल रहा है और उसके आसपास चारों तरफ कांच लगी हुई है।

और ऊपर से श्श ए तिरंग ऊपर से तिरंगों से बंधी एक डोर से सजाया गया है औ --

इस छवि में एक पट्टरी के ऊपर से एक ब्रिज दिखाई दे रहा है।

ये दूर तक कुछ छोटे पेड़ और कुछ बड़े पेड़ और इनके से काफी दूर कुछ बड़े पेड़ और कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे --

यह छवि किसी योगा सेंटर की है जिसमें की कुछ लड़कियां योगा करती हुई दिखाई दे रही है।

एक पैर को दूसरे पर के ऊपर मोड़ के रखा हुआ है और ऊपर हाथों को सिर के ऊपर उठाकर दोनों हाथ आपस में जोड़े हुए हैं।

यह छवि किसी लाइब्रेरी के अंदर की है जिसमें कि तीन बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

और पीछे की तरफ फर्नीचर के अंदर बहुत सारी बि बुक्स रखी हुई हैं और--

यह छवि रात के समय की किसी पेट्रोल पंपर पर की है।

इसके चारों तरफ डिवाइडर बना हुआ है डिवाइडर पर नीला और पीला कलर से कलर किया गया और--

फोर व्हीलर के शोरूम के बाहर की जिसमें कि शोरूम पूरा कांच का बना दिखाई दे रहा और नीचे की तरफ एक तरफ सुजुकी का लोगो और उसी के पास मारुति सुजुकी लिखा हुआ--

दूसरी की तरफ यन ई एक्स ए लिखा हुआ है और बाहर की तरफ तीन चार व्यक्ति दिखाई दे रहे।

और बादलों में छिपा हुआ सूरज दिखाई दे रहा है जिसकी किरणें दिखाई दे रही हैं सूरज नहीं दिखाई दे रहा है।

नीचे की तरफ बहुत छोट छोटे बड़े हम्म घास दिख पेड़ दिखाई दे रहे हैं और घास दिखाई दे रही --